एक बॉक्स रखा हुआ है। सामने पूरे में फैले हुए और एक छोटा सा स्टेज बना हुआ उस पर बैठे हुए हैं।

एक पोस्टर लगा हुआ है। --

इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और इस मंदिर में बहुत तस्वीरे मंदिर पर प्रेम मंदिर लिखा हुआ है उसमे --